यहां छत पर बहुत सारी सोलर प्लेट रखी हुई है।

चार आग बुझाने के यंत्र भी है।

और बहुत सारी डिजाइनिंग चीजें भी रखी हुई हैं।